जैसे की मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा मंदिर नज़र आ रहा है और मंदिर के अन्दर शेर भी रखे हुए नजर आ रहे है और मंदिर के बाहर रखी है आ रही है ।

जैसे कि हम देख पा रही हूं एक बड़ा सा लाल कलर का मन्दिर का गुंबद नजर आ रहा है और उसके ऊपर लगी हुई गोल्डेन कलर की गुंबद भी नजर आ रही है।

सामने एक ईंटों का कच्चा घर भी नजर आ रहा है और उसकी दो खिड़कियां भी नजर आ रही है ।

और बहोत सारे काम करने वाले इंसान भी नजर आ रहे--

और एक औरत बैक चेक करती हुई नजर आ रही है कुछ सूखे पत्ते भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

अलमारियों के अंदर बहुत सारे बलफ भी रखे हुए नजर आ रहे हैं और ब्लफ लगाने के होल्डर भी नजर आ रहे हैं।

व घर के कबुलु भी नजर आ रहे हैं तार के ऊपर डली हुई शर्ट भी नजर आ--

और एक मजदूर के सर में बंधा हुआ रुमाल भी नजर आ रहा है और दिन का वक्त मालूम होता है फावड़ा भी नजर आ रहा--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने बहुत सारे मजदूर नजर आ रहे हैं जो लोहे की राडों को कसते हुए नजर आ रहे हैं और उन--

और उनके सर में लगे हुए कुछ पीले हेलमेट भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोहे की रॉडे भी पड़ी हुई नजर आ रही है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ एक सैलून की दुकान नज़र आ रही है और चार कुर्सियां भी रखी हुई नज़र आ रही है उन चार कुर्सियों पे डली हुई टॉवले भी नज़र आ रही है सामने एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक रूम नजर आ रहा है रूम के अंदर बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं दो --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग की कांच की खिड़कियाँ भी नजर आ रही हैं और सेंटरिंग भी लगी हुई नजर आ रही है दो शटर भी लगे हुए नजर आ रहे --

तरह बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं और एक बिजली का खंभा भी नजर आ रहा है बिजली के खंभे पे लगे लगा हुआ लाल कलर का झंडा भी नजर आ रहा है और सटर--

और मंदिर फूलों से सजा हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारा शटर भी नजर आ रहा है।

दीवार पर टंगी हुई एक सफेद कलर की घड़ी भी नजर में आ रही है और एक बोर्ड भी टंगा हुआ नजर आ रहा है।

और बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ नजर आ रहा--

और एक लाल कलर का कपड़ा भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ नजर आ रहा है दिन का वक्त --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा है तालाब के आस पास लगी हुई ग्रीन घास भी नजर आ रही--

और कांच के अंदर बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे है और सैलून भी नजर आ रहा है और कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रहीं--

और सामने एक शेम्पू नजर आ रहा है और उसके अंदर नहाते हुए बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं बाहर --